और जमीन बहुत थोड़ा गीला है।

इसके बाहर में एक बाइक है और उसके बगल वाले घर के बाहर में एक बूढ़ी मां बैठी हुई है।

सैलून को बाहर से काफ़ी अच्छा डिजाइन किया गया है।

और उसके बगल में एक कांदी केला है।

उसके बगल में और एक पूल है जो कि अभी बनी रहा है।

यह पर डेल एसर एसुस की कंपनिया की इलेक्ट्रॉनिक समान बिकती है।

और यहां पे बहुत सारे लड़की और लड़के भी है।

मंदिर के ऊपर वायर वाली लाइट लगी हुई है जो कि अभी बंद है और एक लैंप लाइट लगी है।

यहां पे महिलाएं कुछ कला दिखा रही है।

यह तस्वीर एक पार्क की है।

जिसे हम अंग्रेजी में पीकॉक बोलते हैं।

पीकॉक पार्क की रास्ता में चलता हुआ प्रतीत हो रहा है।

रास्ते में एक लड़की भी है जो कि चलती हुई प्रतीत हो रही है।

बगल में एक छोटा सा पहाड़ भी है।

आसपास में हरे भरे घास और बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं।

के अंदर बहुत सारे लोग सोए भी--

यह एक केमिकल लैब है जो कि स्कूल में होती है।

सभी कपड़े हैंगर में टंगे हुए हैं।

दुकान में तीन लाइट लगी हुई है।

यह एक दुकान है जिसका नाम न्यासा है।

यह दुकान में सारे सामान कागज के कुट में रखी हुई है।

उस रस्सी में बहुत सारे अलग अलग किस्म के शैंपू रखे हुए हैं।

यह एक हवेली है जो कि सफेद कलर की है और इसका एंट्री गेट बहुत ही बड़ा है।

और इसके बाहर में बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह एक छोटा सा घर है जिसमें एक लाइट और स्पीकर लगा हुआ है।

इसमें से एक गाड़ी का रंग सफेद है जिसका बोनेट खुला हुआ है और एक गाड़ी का रंग सिल्वर रंग का है।

यह एक फैक्ट्री है जहां पे बड़ी बड़ी लोहे की मशीन लगी हुई है।

जहां पे दो पुरुष है जोकि वहा पे काम कर रहे हैं।

इसका नाम आंद्रा बैंक है।